यह फूल रेड कलर का है।

यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं और घास खाती है हिरन।

यह आदमी सीढ़ी पर खड़ा होकर नदी को देख रही है।

रिक्से का कलर भी बहोत खूबसूरत लगती है देखने में।

ये घर के आगे में छे आदमी --